यहां पर एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसमें एक टेबल रखी हुई है। टेबल पर पानी की बोतल रखी हुई है। एक थरमस रखा हुआ है जो रहा है। दो कुर्सी दिखाई दे रही हैं।

कलर रखा हुआ है एक कैर मे कुछ डब्बे रखे हुए है बाल्टियाँ रखी हुई है जो दिखाई दे रही है यहा पर एक टेब टेबल रखी हुई है जो दिखाई दे रही है।

एक सिलेंडर रखा हुआ है जो दिखाई दे रहा है। यहां पर तवे पर एक व्यक्ति कुछ कुछ बनाकर डाल रहा है जो दिखाई नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहां पर कांच लगा है।

यहाँं पर एक कांच की टेबल में कुछ समोसे और कचोरी रखी हुई हैं जो दिखाई दे रही हैं।

यहाँ पर एक फ्रिज में कुछ केक रखे हुए है जो दिखाई दे रहे हैं।

एक स्टोर दिखाई दे रही है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है रैकों पर। यहां पर कुछ बाल्टी रखी हुई हैं।

यहाँ पर एक कमरा दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ कपड़े रखे हुए है जो दिखाई दे रहे है। गुब्बारे लगे हुए है जो दिख रहे है। लाइट कसी हुई है जो दिखाई दे रही है। कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है।